खंबा खड़ा है उस पे लाइट लगा हुआ है बहुत सारी लाइट अंदर में भी लगा हुआ है।

चित्र को देखकर यह पता चलता है।

इस चित्र से साफ साफ पता चलता है कि आईडिया का सिम जो बेचता है आइडिया सिम का केयर है।

इस पिक्चर के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि यह कोई कॉलेज स्कूल या फिर घर है।

यह एक रेस्टोरेंट या फिर एक मोल है।

जो की सभी अलग अलग कलर में है।

जहां पे बहुत सारे बाईकें लगे हुए हैं बहुत सारे बॉक्स दिख रहे है।

वहां पे डस्टबिन दिख रहा है बहुत सारे लेडीज जेंस खड़े हैं।

बहोत सारे लेडीज जेंट्स है जो की इधर उधर घूम रहे--

इस चित्र के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि यह एक किराना स्टोर है।

इसमें बहुत सारा तेल के डब्बे है।

इसमें बच्चों के खेलने के लिए ट्रेन भी लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं।

जो की न्यू उद्घाटन हुआ है द सिटी कैफे के नाम से दुकान खुला हुआ है।

एक लड़की के हाथ में कड़ा भी एक बाइक है।

यहां पे बॉक्स भी लगा हुआ है एक बॉक्स नीचे में स्टैंड में लगा हुआ है एक वहां पे कोना में रखा हुआ है।

इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए है ग्राउंड के चारों तरफ यहां पे कोई खेल या कुछ हो रहा--

बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे है लंबे चौड़े पेड़ एक पेड़ के चारों तरफ साइकिल ही साइकिल घिरे हुए हैं।

बॉक्स लगा हुआ है स्टील का एक इलेक्ट्रिक का घड़ी दिख रहा है।

यहां पे एक बेड लगा हुआ हैं उसपे रजाई हैं बेडशीट हैं।

और लेडीज पर खड़े है एक लड़के के हाथ में अल लाल पर्दा भी लगा--